सर्वलेट मेथड्स के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न करना सीखेंगे जेएसपी प्रयोग करके सिम्पल लोगिन फॉर्म बनाना डोगेट मेथड प्रयोग करके पैरामीटर्स पास करना डोपोस्ट मेथड प्रयोग करके पैरामीटर्स पास करना डोगेट और डोपोस्ट मेथड्स के बीच अंतर
यहाँ मैं उपयोग कर रहा हूँ उबन्टु वर्जन 1204 नेटबीन्स इडे 73 जेडीके 17 फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र 210 आप अपनी पसंद का कोई भी वेब ब्राउज़र प्रयोग कर सकते हैं
इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको निम्न का पता होना चाहिए नेटबीन्स इडे प्रयोग करके कोर जावा और एचटीएमएल जावा सर्वलेट्स के बेसिक्स और जेएसपीएस यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ
हम अपनी वेब एप्लीकेशन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने से शुरू करेंगे
पहले हम होम पेज बनाएंगे
वह होम पेज एक सरल लॉगिनफॉर्म रखेगा
यह प्रमाणित यूज़र्स को लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम लॉगिन करने की अनुमति देगा
अब नेटबीन्स इडे खोलते हैं
अब इंडेक्स डॉट जेएसपी पेज पर जाते हैं जो हमने पहले ही संशोधित कर लिया था
मैंने अपने होम पेज को बनाने के लिए यह पेज संशोधित किया
हम इसका टाइटल होम पेज रखते हैं
ढांचे के अंदर हमारे पास border1 के साथ एक टेबल है
यहाँ आप कोड पर एक नज़र डाल सकते हैं
टेबल के अंदर हमने एक शीर्षक वेलकम टो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सम्मिलित कर लिया है
आगे हमारे पास पैराग्राफ टैग है जो सम्मिलित करता है थिस इस थे होम पेज फोर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम फिर हमारे पास एक हाइपरलिंक है जो विजिटरहोमपेज डॉट जेएसपी नामक पेज को लिंक करता है
हम यह पेज बाद में बनाएंगे
आगे हमारे पास एक सरल लॉगिन फॉर्म है
यह फॉर्म एक रजिस्टर्ड यूज़र को लॉगिन करने की अनुमति देता है
फॉर्म बनाने से पहले आपको ग्रीटिंगसर्वलेट नामक एक सर्वलेट बनाना पड़ेगा
ट्यूटोरियल को रोकें और पिछले ट्यूटोरियल में समझाया हुआ एक नया सर्वलेट बनायें
ध्यान दें कि सेर्वलेट नेम ग्रीटिंगसर्वलेट है
उर्ल पैटर्न ग्रीटिंगसर्वलेटपाठ होना चाहिए
यह फॉर्म दो इनपुट एलीमेन्ट्स रखता है यूज़रनेम और पासवर्ड इसमें एक सबमिट बटन भी है जो सिग्न इन करने को कहता है आगे हमारे पास एक पैराग्राफ टैग है जो adduserजेएसपी का सम्मलित करता है
यह उन यूज़र्स के लिए रजिस्ट्रेशन पेज है जो रजिस्टर्ड नहीं हैं
अब हम अपने greetingservletजावा पर जाते हैं
ध्यान दें कि greetingservletजावा उसी पैकेज orgस्पोकेंट्यूटोरियल में बनाया गया है
अब यह सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से फॉर्म दाता को एक्सेस करने के लिए सक्षम होगा
यह सर्वलेट कंट्रोलर की तरह कार्य करेगा
क्या आपको याद है कि हम पहले भी कंट्रोलर के बारे में जान चुके हैं अब हम देखेंगे कि सर्वलेट कंट्रोलर की तरह क्या करता है
फॉर्म डेटा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में रहेगा
फर्स्ट टास्क फॉर्म डेटा पैरामीटर्स को पुनः प्राप्त करना है
रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पर गेटपैरामीटर मेथड प्रयोग करके ऐसा हुआ है
अतः नेटबीन्स इडे पर जाते हैं
डोगेट मेथड के अंदर टाइप करें
प्रिंटवृतर स्पेस आउट इक्वल टो रिस्पांस डॉट गेटव्राइटर आगे हम फॉर्म डेटा पैरामीटर्स को पुनः प्राप्त करेंगे
अतः अगली लाइन में टाइप करें स्ट्रिंग स्पेस यूजरनेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेटपैरामीटर ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में यूजरनेम और सेमीकोलन
ध्यान दें कि यह यूजरनेम वो नेम है जो हमने फॉर्म टैग में यूजर नामे के लिए जोड़ा है
उसी प्रकार हम पासवर्ड को भी पुनः प्राप्त करेंगे
अतः अगली लाइन पर टाइप करें स्ट्रिंग स्पेस पासवर्ड इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेटपैरामीटर ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में पासवर्ड सेमीकोलन
आगे हम आउटपुट में यूजर नामे प्रिंट करेंगे
अतः अगली लाइन पर टाइप करें आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में हेलो फ्रॉम गेट मेथोड प्लस यूजरनेम अब इस प्रोजेक्ट को करने के लिए माइफर्स्टप्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करें
क्लीन एंड बिल्ड पर क्लिक करें
फिर से माइफर्स्टप्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करें रुन पर क्लिक करें
अतः सर्वर ठीक है और रन हो रहा है
इसने माइफर्स्टप्रोजेक्ट डिप्लॉय किया है
हमें ब्राउज़र में प्रदर्शित हमारा होम पेज मिल गया है
देखें कि पेज का टाइटल होम पेज है
यहाँ हम बहुत सरल लॉगिन फॉर्म देख सकते हैं
मैं यूजरनेम और पासवर्ड एंटर करता हूँ
मैं यूजरनेम में आर्य टाइप करुँगा
और पासवर्ड में arya123 फिर सिग्न इन पर क्लिक करें
हम देख सकते हैं कि हमें हेलो फ्रॉम गेट मेथोड आर्य आउटपुट मिला है
अब यूज़र यहाँ लॉगिन करने में सक्षम था लेकिन हमने कोड के अंदर कोई प्रमाण सम्मिलित नहीं किया है
हम यह बाद के ट्यूटोरियल में ऐसा करेंगे
अब यहाँ उर्ल को देखते हैं
यह है लोकलहोस्ट कोलन 8080 स्लैश माइफर्स्टप्रोजेक्ट स्लैश ग्रीटिंगसर्वलेटपाठ क्वेशन मार्क यूजरनेम इक्वल टू आर्य और पासवर्ड इक्वल टू arya123 अब क्वेशन मार्क के द्वारा पेज की जानकारी से फॉर्म दाता को अलग किया गया है
हम देख सकते हैं कि यूज़रनेम और पासवर्ड जो हमने फॉर्म के अंदर एंटर किये थे उर्ल के भी अंदर है
अब पोस्ट मेथड प्रयोग करके हम उपरोक्त के समान ही कोशिश कर सकते हैं
अतः इडे पर वापस आते हैं
उस कोड को कॉपी करें जो हमने डोगेट मेथोड में लिखा था और उसे डोपोस्ट मेथोड में पेस्ट करें
अब प्रिंटलन स्टेटमेंट को हेलो फ्रॉम पोस्ट मेथोड से बदलें
अब इंडेक्स डॉट जेएसपी खोलें
हमें फॉर्म टैग के मेथोड एट्रीब्यूट को पोस्ट में बदलना ज़रूरी है
आप अभी इस कोड को देख सकते हैं
हमारे पास फॉर्म एक्शन इक्वल टू ग्रीटिंगसर्वलेटपाठ मेथोड इक्वल टू पोस्ट है
अब हम फिर से इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे
अतः माइफर्स्टप्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करें और रुन पर क्लिक करें
हमें उसी प्रकार का आउटपुट मिला जैसा हमें गेट मेथड प्रयोग करते समय मिला था
अतः फिर से यूज़रनेम और पासवर्ड टाइप करें
फिर सिग्न इन पर क्लिक करें
ध्यान दें कि हमें हेलो फ्रॉम पोस्ट मेथोड आर्य मिला है
अब उर्ल को देखें
यह लोकलहोस्ट कोलन 8080 स्लैश माइफर्स्टप्रोजेक्ट स्लैश ग्रीटिंगसर्वलेट पथ है
यहाँ हम रिक्वेस्ट के उर्ल में फॉर्म दाता को नहीं देखते हैं
यही डोगेट और डोपोस्ट मेथड्स में बड़ा अंतर है
अब हम सीखते हैं कि कब गेट मेथड और कब पोस्ट मेथड प्रयोग करें
गेट प्रयोग होगा जब फॉर्म छोटा है और इसीलिए डेटा कम है
यूज़र चाहता है कि डेटा की विषय वस्तु उर्ल में दिखाई दे
पोस्ट मेथड प्रयोग होता है जब फॉर्म बड़ा है और इसीलिए डेटा ज़्यादा है
यूज़र नहीं चाहता कि डेटा की विषय वस्तु उर्ल में दिखाई दे
उदाहरण पासवर्ड इसे सारांशित करते हैं इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा जेएसपी प्रयोग करके सिम्पल लोगिन फॉर्म बनाना
डोगेट मेथड प्रयोग करके पैरामीटर्स पास करना
डोपोस्ट मेथड प्रयोग करके पैरामीटर्स पास करना
डोगेट और डोपोस्ट मेथड्स के बीच अंतर
कृपया सुनिश्चित कर लें कि आगे बढ़ने से पहले आपने यह ट्यूटोरियल ख़त्म कर लिया हो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
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है
ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं
अधिक जानकारी के लिए कृपया कॉन्टैक्ट एटी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी को लिखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी httpspoken tutorialorgNMEICT इंट्रो पर उपलब्ध है
लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम अग्रणी सॉफ्टवेयर मन्क के कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी कार्यक्रम के अंतर्गत योगदान दिया गया है
इस स्पोकन ट्यूटोरियल के लिए उन्होंने इस विषय वस्तु की पुष्टि भी की है
मैं यश वोरा आपसे विदा लेता हूँहमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद